इस तस्वीर में हमें चर्च में काफी लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक लाइन से दुकान बनी हुई हैं जिनका कलर हल्का नीला और सफेद में है।

और यह दीवारे ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहे हैं और काले कलर में मेजेज टेबल भी रखे हुए हैं।

इस टेंट पर लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही है और टेंट का कलर रंग बिरंगा दिखाई पड़ रहा है।

इस होटल के बाहर वेलकम लिखा हुआ है जो कि काफी अच्छी ड्राइंग बनाई गई है।

जहां पर ढेर सारे पाइप और कुछ पेट्रोल रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक स्कूल कोचिंग का दृश्य दिखाया गया है।